qgis संस्थापन पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में हम qgis को
windows और mac ऑपरेटिंग सिस्टम पर संस्थापित करना सीखेंगे
संस्थापन के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ
windows 10
mac os x 1010 और
कार्यरत इंटरनेट कनेक्शन
ctrl alt और t कीज़ को एक साथ दबाकर टर्मिनल खोलें
प्रोम्प्ट पर टाइप करें sudo space su और एंटर दबाएं
एक मैसेज प्रदर्शित होता है कि किस प्रोम्प्ट पर आपको system password प्रविष्ट करना है
टाइप करें password और एंटर दबाएं
अब हमें संस्थापन के लिए कुछ कमांड्स को निष्पादित करना होगा
यहां मेरे पास आवश्यक कमांड्स की सूची की फाइल है
यह फाइल qgis installation repositories के नाम के साथ code files लिंक में उपलब्ध है
अब qgis repositories को sourceslist फाइल में जोड़ें
निम्न कमांड को कॉपी करें कॉपी करने के लिए ctrl c का उपयोग करें
terminal prompt पर राइटक्लिक करें और paste चुनें और एंटर दबाएं
sourceslist फाइल के साथ gedit editor खुलेगा
qgis installation repositories फाइल पर वापस जाएं
अब sourceslist फाइल के अंत में यहां दो चिन्हांकित लाइन जोड़ें
यहां दर्शाई गई दो लाइनों को कॉपी करें
sourceslist फाइल के अंत में पेस्ट करें
फाइल को सेव करने के लिए ctrl s दबाएं
अब अपनी विंडो के ऊपरी बाएं कोने पर क्रॉस पर क्लिक करके इस फाइल को बंद करें
terminal prompt पर टाइप करें sudo space aptget space update और एंटर दबाएं
यह प्रक्रिया कुछ समय ले सकती है अपडेट अब पूर्ण हो गया है
यहां हमें कुछ और कमांड्स निष्पादित करने की आवश्यकता है
qgis installation repositories फाइल पर जाएं
निम्न तीन कमांड्स यहां दिखाई दे रही हैं
हमें इन्हें एकएक करके निष्पादित करने की आवश्यकता है
एक समय एक कमांड टाइप करें और उन्हें टर्मिनल में पेस्ट करें
prompt पर प्रत्येक कमांड पेस्ट करने के बाद एंटर दबाएं
तीसरी कमांड के निष्पादन के बाद आप एक ok मैसेज देखेंगे
अब qgis installation repositories फाइल से आखिरी कमांड निष्पादित करें निम्न कमांड कॉपी करें
इसे terminal prompt पर पेस्ट करें और एंटर दबाएं
जारी रखने के लिए y दबाएं और एंटर दबाएं
इस प्रक्रिया में कुछ समय लगेगा
संस्थापन अब पूर्ण हो गया है
अपने कीबोर्ड पर windows की दबाएं और search bar में qgis टाइप करें
आप qgis desktop application देखने के लिए सक्षम होने चाहिए qgis खोलने के लिए इस पर क्लिक करें
यह qgis interface है
अब windows पर qgis संस्थापन देखते हैं
qgis installation repositories फाइल पर वापस जाएं निम्न लिंक को कॉपी करें
अपने सिस्टम पर किसी भी वेब ब्राउज़र को खोलें मैं chrome खोल रही हूँ
कॉपी किए गए लिंक को वेब ब्राउज़र में पेस्ट करें और एंटर दबाएं
इस एरर मैसेज को अनदेखा करें और ok पर क्लिक करें
long term release repository most stable सेक्शन पर नीचे स्क्रोल करें
अपने सिस्टम के अनुसार 64 बिट या 32 बिट के मध्य उपयुक्त सेटअप चुनें
संबंधित setup फाइल के बाईं ओर दिए गए download आइकन पर क्लिक करें
आपके इंटरनेट की गति के आधार पर installer फाइल डाउनलोड़ होने में कुछ समय लगेगा
मैंने इस सेटअप फाइल को पहले से ही डाउनलोड़ किया है और इसे downloads folder में सेव किया है
अब downloads folder पर जाते हैं
task bar उपलब्ध search बॉक्स में downloads टाइप करें
downloads ऑप्शन पर क्लिक करें
downloads फोल्डर खुलता है
qgis installer फाइल खोजें
संस्थापन प्रक्रिया शुरू करने के लिए इस पर डबलक्लिक करें
आपके सिस्टम पर एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा शुरू करने के लिए yes पर क्लिक करें
installation wizard खुलता है
निर्देश पढ़ें और next बटन पर क्लिक करें
software license agreement पेज में i agree बटन पर क्लिक करें
वह स्थान चुनें जहां सॉफ्टवेयर संस्थापित करना है यदि सुनिश्चित नहीं हैं तो डिफॉल्ट लोकेशन रखें
संस्थापन के लिए आपको कोई अतिरिक्त घटकों को चुनने की आवश्यकता नहीं है qgis शुरू करें
install button पर click करें
संस्थापन में कुछ समय लगेगा
संस्थापन को पूर्ण करने के लिए finish बटन पर क्लिक करें qgis अब आपके सिस्टम्स पर संस्थापित हो गया होगा
taskbar पर उपलब्ध search बॉक्स में qgis टाइप करें
सूची में आपको qgis desktop application दिखना चाहिए
qgis को खोलने के लिए इस पर क्लिक करें
यह qgis interface है
अब mac os पर qgis संस्थापन देखते हैं
qgis डाउनलोड़ वेब पेज पर वापस जाएं जिसे हमने पहले खोला था
mac os x टैब के लिए download खोलें
long term release most stable सेक्शन पर नीचे स्क्रोल करें
संबंधित setup फाइल के बाईं ओर पर दिए गए download icon पर क्लिक करें
एक dialog box खुलता है
डिफॉल्ट फाइल नाम न बदलें
फाइल को सेव करने के लिए लोकेशन के रूप में downloads फोल्डर चुनें
save बटन पर क्लिक करें
आपके इंटरनेट की गति के आधार पर इंस्टॉलर फाइल डाउनलोड़ होने में कुछ समय लगेगा
मैंने इस सेटउप फाइल को पहले ही डाउनलोड़ किया है और इसे downloads फोल्डर में सेव किया है
अब downloads फोल्डर पर जाएं
स्क्रीन के ऊपर दाएं कोने पर search आइकन पर क्लिक करें
downloads टाइप करें downloads फोल्डर ऑप्शन पर डबलक्लिक करें
qgis installer फाइल खोजें संस्थापन प्रक्रिया शुरू करने के लिए इस पर क्लिक करें
सेटअप फोल्डर कई फाइल्स के साथ खुलता है
यहां चार पैकेजेस हैं प्रत्येक नंबर से शुरू होता है
यह आपको पैकेजेस को संस्थापित करने के क्रम को समझाता है
नॉनएप्पल डिवलपर स्वीकृत सॉफ्टवेयर के संस्थापन को अनुमति देने के लिए पहले अपने mac security preferences को allow apps downloaded from: anywhere में बदले
स्क्रीन में ऊपरी दाएं कोने पर search आइकन पर क्लिक करें system preferences टाइप करें और एंटर दबाएं
system preferences के साथ विंडो खुलेगा
security & privacy पर क्लिक करें
security & privacy विंडो से general टैब में बदलावों को अनुमति देने के लिए नीचे बाएं कोने में लॉक आइकन पर क्लिक करें
डायलॉग बॉक्स में अपना system password प्रविष्ट करें
फिर unlock बटन पर क्लिक करें
allow apps downloaded from सेक्शन में anywhere रेडियो बटन पर क्लिक करें
एक डायलॉग बॉक्स खुलता है allow from anywhere बटन पर क्लिक करें
सेटिंग्स को लॉक करने के लिए निचले बाएं कोने में खुले लॉक बटन पर क्लिक करें
window बंद करें
अब सेटअप फोल्डर पर जाएं और पैकेज नंबर 1 पर डबलक्लिक करें
इस installation wizard में निर्देशों को अनुकरण करें और package संस्थापित करें
continue पर click करें
दिए गए महत्वपूर्ण निर्देशों को पढ़ें और continue पर क्लिक करें
license agreement पढ़ें और continue पर क्लिक करें
खुले डायलॉग बॉक्स में agree बटन पर क्लिक करके software license agreement को स्वीकृत करें
install पर क्लिक करें
खुले डायलॉग बॉक्स में system password टाइप करें
और install software बटन पर क्लिक करें
संस्थापन पूर्ण होने पर close बटन पर क्लिक करें
पैकेज नंबर्स 23 और 4 के लिए इस प्रक्रिया को पुनः करें
सभी चार पैकेजेस का संस्थापन पूर्ण होने पर qgis आपके सिस्टम पर संस्थापित होगा
search आइकन पर क्लिक करें qgis टाइप करें
qgis आरंभ करने के लिए qgis एप्लिकेशन पर डबलक्लिक करें
यहां qgis interface है
इंटरफेस और विशेषताओं के बारे में अधिक जानकारी आने वाले ट्यूटोरियल्स में बताई जाएगी
संक्षेप में इस ट्यूटोरियल में हमने सीखाः
ubuntu linux वर्जन 1604 windows 10 और mac os x 1010 पर qgis वर्जन 218 का संस्थापन
नियतकार्य के रूप में अपनी मशीन पर qgis संस्थापित करें
qgis इंटरफेस खोलें और समन्वेषण करना
मैन्यू और टूलबार्स पर जाएं
निम्न लिंक पर मौजूद विडियो स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है कृपया इसे डाउनलोड करें और देखें
स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम कार्यशालाएं आयोजित करती है और ऑनलाइन टेस्ट पास करने वाले को प्रमाणपत्र भी देते हैं अधिक जानकारी के लिए कृपया हमें लिखें
यदि इस स्पोकन ट्यूटोरियल से संबंधित आपके कोई प्रश्न हैं तो कृपया इस साइट पर जाएं
वह मिनट और सेकेंड चुनें जहां आप प्रश्न पूछना चाहते हैं संक्षिप्त में अपना प्रश्न बताएं हमारी टीम से कोई उनका उत्तर देगा
स्पोकन ट्यूटोरियल फोरम इस ट्यूटोरियल पर आधारित विशिष्ट प्रश्नों के लिए है
कृपया असंबंधित और सामान्य प्रश्न पोस्ट न करें इससे अव्यवस्था को कम करने में मदद मिलेगी
कम अव्यवस्था के साथ हम इन चर्चाओं को निर्देशन सामग्री के रूप में प्रयोग कर सकते हैं
स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट nmeict mhrd भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित है इस मिशन से संबंधित अधिक जानकारी दिए गए लिंक पर उपलब्ध है
यह स्क्रिप्ट विकास द्वारा अनुवादित है आईआईटी बॉम्बे से मैं जया अब आपसे विदा लेती हूँ धन्यवाद